model village यानि आदर्श गाँव : hiware bazar के spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम निम्न के बारे में सीखेंगे
1 hiware bazar के लोगों के सामने आने वाली समस्याएँ
2 hiware bazar की वास्तविक स्थिति और
3 इन बदलावों को लाने वाली कार्यप्रणाली
hiware bazar के लोगों के सामने आने वाली समस्याएं
hiware bazar के लोग कृषि के लिए वर्षा पर निर्भर थे
मिट्टी का भारी कटाव भूमि की गुणवत्ता को ख़राब कर चुका था
पीने का पानी मुश्किल से उपलब्ध था
उनके पास पर्याप्त चारा नहीं था
लकड़ी का ईंधन भी उपलब्ध नहीं था
ये बहुत सी सामाजिक समस्याओं की ओर अग्रसर करता है जैसे:
बेरोज़गारी
लोगों को नौकरी मिलना मुश्किल हो गया था
स्थानान्तरण
लोगों ने गाँव से स्थानांतरण शुरू कर दिया था
और अपराध दर में वृद्धि हुई
hiware bazar की वर्तमान स्थिति
प्रति व्यक्ति आय 1995 में 830 रूपए से बढ़कर 2012 में 30000 रूपए हो गयी
गांव में 60 लखपति हैं
गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या 1995 में 168 से 2012 में केवल 3 रह गयी
उसी दौरान दूध का उत्पादन 150 litres से बढ़कर 4000 litres हो गया
साक्षरता दर 30% से बढ़कर 95% हो गयी है
अपराध दर काफी नीचे आ गयी है
और रोज़गार में वृद्धि हुई है
वह कार्यप्रणाली जिससे स्थिति में सुधार हुआ
पांच आयामी दृष्टिकोण या panchsutri
1 नि: शुल्क स्वैच्छिक श्रम या shramdaan
2 charai पर प्रतिबंध या charai bandi
3 पेड़काटने पर प्रतिबन्ध या kurhad bandi
4 शराब पर प्रतिबन्ध या nasha bandi
5 परिवार niyojan या kutumb niyojan
shramdaan
लोगों ने समुदाय के कल्याण के लिए एक साथ काम करना शुरू किया
ग्रामीणों ने एक कार्य संस्कृति विकसित की
वे पानी के प्रवाह को came करने के लिए पहाड़ियों के पास check dams का निर्माण करने एक साथ आए
check dams ने भूजल के स्तर को बढ़ाने में मदद की और मिट्टी के कटाव को dams किया
चराई बन्दी
मवेशिओं की अधिक चराई banned की गयी
अधिक चराई मरुस्थलीकरण और मिटटी के कटाव का कारण बनती है
चराई पर प्रतिबन्ध
घास का उत्पादन 199495 में 200 टन से 20012002 में 50006000 टन से भी अधिक हो गया
kurhad bandi
पेड़ों के काटने पर प्रतिबन्ध लगाया गया
पेड़ मिट्टी के कटाव की रोकथाम में मदद करते हैं
मिट्टी का कटाव भूमि को ख़राब करता है और इसलिए कृषि योग्य भूमि कम रह जाती है
पेड़ बारिश के पानी को धीमा करते हैं और भूजल के स्तर को बढ़ाते हैं
पेड़ों के अवशेष मिट्टी को उपजाऊ बनाने में उपयोगी होते हैं
nasha bandi
22 शराब की दुकानों को बंद करा दिया गया
तम्बाकू और शराब के सेवन कोपूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया
gram sabha ने banks से अनुबंध करके उनको ऋण दिलवाया जिनकी शराब की दुकानें थीं
अपराध की दर कम हुई
लोग अधिक उपयोगी कार्यों में लगे जिससे समुदाय को मदद हुई
kutumb niyojan
प्रति परिवार एक बच्चे का सख्त नियम लगाया गया
जन्म दर प्रति हजार 11 कम हुई
यह महिलाओं में गर्भावस्था से संबंधित स्वास्थ्य के खतरे से बचाता है
परिवार नियोजन से शिशु मृत्यु दर भी कम होती है
यह लोगों को समर्थ बनाने और परिवार की शिक्षा को बढ़ाने में मदद करता है
परिवार नियोजन एक दीर्घकालिक समुदाय बनाने की कुँजी है
इस tutorial से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि
गाँव का सामूहिक प्रयास एक विशाल बदलाव ला सकता है
panchsutri सिद्धांत बहुत प्रभावी साबित हुए हैं
इन कार्यप्रणालियाँ का अनुसरण करके ऐसे कई आदर्श गाँवों का निर्माण हो सकता है
ये हमें इस tutorial के अंत में लाता है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
यह भारत सरकार के एमएचआरडी के आईसीटी के राष्ट्रीय साक्षरता mission द्वारा समर्थित है
इस मिशन पर अधिक जानकारी
आई आई टी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य अब आपसे विदा लेती हूँ
हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद